और एक लोग दिखाई दे रहे जो ग्रे कलर का कपड़ा पहना है इसका आसमान का कलर व्हाइट है।

इस इमेज में वाइट कलर की रूम दिखाई दे रही है इसमें लोग बैठे हुए रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं।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

रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए उसके जमीन का कलर है ग्रीन और मिट्टी कलर का--

इस इमेज में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जैसे व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं रेड कलर के और इसके दीवार का कलर मिट्टी कलर है जमीन का कलर मिट्टी--

इस इमेज में हमें सड़के दिखाई दे रही है जो ग्रे कलर के हैं सामने घर दिखाई दे रहा है वो भी ग्ले ग्रे कलर का है।

इस इमेज एक पत्थर की चट्टान दिखाई दे रही है जो रेड कलर का है।

इस इमेज हमें सामने एक लड़का दिखाई दे रहा है जो ब्लैक रेड व्हाइट और ब्लू कलर का कपड़ा पहना हुआ हैं इसके पत्थर का कलर है मिट्टी कलर और ग्रीन कलर की हैं।